यहा एक कोचिंग क्लास के बाहर का गेट दिख रहा है। गेट के उपर बड़ा सा--

दो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए है एक सफेद कलर का एक नीले कलर का बोर्ड लगा है।